ये टेबुल भी है एक ब्लू कलर का--

यहां पे गाड़ी से संबंधित बहुत सारे पार्ट पुर्जे रखें गए हैं।

यहां बहुत सारे लोग भी एकत्रित हैं और यह पंडाल विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी लाइटों से सजा है और कपड़ों भी से भी सजा--